तीन किसी साल का लग रहा है यहाँ पे ट्रैफिक जाम है टाइमआउट दिखाई दे रहा है यहाँ पे लोग बजार करने के लिए आते हैं ।

एक छोटा सा दुकान है छोटे सा रूम स्वामी का दुकान है छोटे मजदूर जैसा लग रहे है और यहां पे छोटे-मोटे लोग गाँव का रोड गाँव की कच्ची सड़क है ।

यह एक सरकारी हॉस्पिटल या फिर कॉलेज की तरह लग रहा है । जहां पे खूब गार्ड भी है । बहोत सारे लोग भी है । गिट्टी भी है पेड़ भी है ।

यहाँ पे घर बन रहा है ढलैया कर रहा है बिल्डिंग बन रहा है और यहाँ पे बहुत सारे मजदूर हैं जिसमें छत लग रहा है कि छत की ढलाई हो रही है ।

यह सब राशन की दुकान है ।